बोलिंग कोर्ट के सामने की दीवार को रंग बिरंगी पेंट से--

इस फोटो में दो लड़कियां सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रही हैं।

स्टेज को लाइटों से सजाया गया है।

दुकान के बाहर एक बैनर भी लगा--

इस फोटो में किसी पार्टी या शादी के एंट्री गेट को दिखाया गया है।

पेड़ के बगल में एक बड़ा सा बिल बोर्ड भी दिख रहा है।

इस फोटो में किसी मार्केट का दृश्य दिखाया गया है।

एक बैनर पर प्रतिभा बुक डिपो लिखा दिख रहा है।

इस फोटो में छठ पूजा का दृश्य दिखाया गया है।

इमारत में नीले रंग का--

पेड़ों के बगल से बिजली का एक खंभा भी लगा हुआ है।

इस फोटो में किसी बाग का दृश्य दिखाया गया है।

एक बाइक भी खड़ी दिखाई दे रही है।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

एल_इ_डी डिस्प्ले पर मुंशी पुलिया लिखा हुआ है।

इस फोटो में चारबाग रेलवे स्टेशन दिखाया गया है।

इस फोटो में किसी दुकान का दृश्य दिखाया गया है।

पेट्रोल पंप में पीछे पेट्रोल वाला टैंकर --

कमरे को गुब्बारों से सजाया गया है।

यह लोगों के चलने के लिए स्थान है।

एक कस्टमर दुकान के बाहर भी खड़ा हुआ है।